यहां पे दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ जिसपे लिखा हुआ आई_पी_एस ।

यहां पर ये दीवार पे नीले कलर का पेंट किया गया उस पर लाइटें लगाई गई है।

यहां पे मेज पर एक लैपटॉप खा हुआ है यहां पे एक पंखा एक पानी की बोतल है यहां पे कुर्सी पर एक तकिया और टॉवेल रखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे आदमी खड़े हुए एक आदमी के हाथ में एक बैग है।

यहां पे दीवार पर बाहर लाल कलर का पेंट किया गया है।

सफ़ेद और मेला यहा पर एक आदमी।

यहां पे एक ए_सी भी लगा हुआ है यहां पे बहोत सारे पंखे भी--

शीशे लगाए हुए हैं यहां पे एक--

यहां पे एक बिजली का खम्बा लगाया हुआ है उसमे से बहुत सारी तारे आ जा रही है यहाँ पे बहुत सारी दुकान --

यह एक घर की तस्वीर है यहां पे पाथ बने हुए हैं एक लेडिस --

यहां पे एक आदमी एक लड़की की फोटो खींच रहा है यहां पे बहोत सारे--

आ जा रहे हैं। एक आदमी के हाथ में पन्नी है।